ए_सी लगी हुई है एक कांच का गेट लगा हुआ है अंदर एक आदमी --

खड़ा है और बाहर एक आदमी खड़ा है एक टेबुल लगी हुई है और मोबाइल खरीदने गया है।

हेयर सैलून है इसमें पानी के फुव्वारे हैं दो आदमी --

कटिंग बना रहे हैं दो बैठे हैं एक की ब्लीच हो रहा है बहुत ही सुंदर लग रही है।

और वाइट कलर का पेट्रोल पंप एक बोर्ड लगा हुआ है प्रदूषण का भी लगा हुआ है।

बार है इसमें सोफा सेट लगे हुए हैं टेबुल लगी हुई है।

और आम आदमी घूमने के लिए आए हुए हैं लाइट लगी हुई है पेड़ पौधे लगे हुए हैं फूल लगे हुए हैं आदमी बैठे हैं।

यह एक बहुत बड़ा पारक है इसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है और --

यह एक बहोत बड़ा मार्केट है।

आ एक मो स्कूटी पे आदमी जा रहा है एक पोल लगा हुआ है उसमें अशोक गहलोत की तस्वीर दिख रही है।

और एक हरा पेड़ है और लोहे के एंगल लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है।

की दुकान है इसमें दो लड़के खड़े है।

यह एक दुकान है दुकान के पास मे ये सीढ़ियां है।

पेड़ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है और हरा-भरा लग रहा है पानी में कुछ पड़े हुए है।

इसमें एक गैलरी लगाई हुई है इसमें फोटो लगी हुई है।

मकान के सामने पेड़ पौधे लगे हुए हैं मकान के दो पिलर लाल कलर के हैं।

यह एक मदर डेयरी है इसके सामने --

सामने दो पोस्टर डॉक्टर के लगे हुए हैं बहोत ही अच्छा है।